और खिड़की देख रहे हैं। टेबल रखी हुई चेयर रखी हुई दिख रही है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ हैं जो कि सिर पर टोपा लगाए हुए अंदर बोहोत सारा सामन रखा हुआ हैं लाइटिंग दिख रही हैं।

और ऊपर वाइट कलर पेंट है। बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में क्लिप लगा हुआ है।

टेबल है टेबल पर बोतल लगी हुई है चेयर रखी है हेल्मेट रखा हुआ है व्हाइट कलर से पेंट है।

और पेड़-पौधे लगे हुए हैं। एक व्यक्ति खड़ा है पीछे काफी सारी बिल्डिंग दिख रहीं है।

यह एक किराना स्टोर है जहाँ पर बहुत सारे किराने के सामान रखे हुए है रैक बनी हुए है जिसमें--

यह एक पार्क है। पार्क में हरी-हरी घांस लगी हुई है और लाइटिंग लगी हुई है। बिल्डिंग दिख रही है।

पेड़-पौधे लगे हुए हैं आसमान दिख रहा है और प्रतिमाएँ भी बनी हुई हैं छोटी-छोटी।

और रास्ता पर एक पट्टी है जो कि व्हाइट कलर की दिख रही है।

आसमान दिख रहा है मंदिर में घंटी लगी हुई है एक लेडिस है जो की पिंक कलर की साड़ी में है।